एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा बहुत बड़ा लाईट दिखाई दे रहा है ए_सी दिखाई दे रहा है नीचे मे पोस्टर्स दिखाई दे रहे व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर किसी बिल्डिंग की है जिसमे कुछ भवन जैसा कुछ लिखा हुआ है यहा बहुत सी चिपके हुए है पोस्टर चिपके हुए है यहा ठेला दिखाई दे रहा है गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर किसी बड़ी मेडिकल की दिखाई दे रही है यहा बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसको --

यह तस्वीर किसी हॉस्पिटल तस्वीर है जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है हॉस्पिटल केअर हॉस्पिटल है यह तीन कार दिखाई दे रहे--

यह तस्वीर किसी केक शॉप का लग रहा है जहा बहुत से केक शॉप दिखाई दे रहे है और काच का दरवाजा लगा हुवा दिखाई दे रहा है पाइप दिखाई दे रहा है बोर्ड दिखाई दे रहा है शटर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे हमे ग्राउंड की तस्वीर दिखाई दे रही है जहा आसमान दिखाई दे रहा है खंबा दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है बहुत से घास दिखाई दे रहे है बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे एक पार्क की तस्वीर दिखाई दे रही है जहा एक कुत्ता बैठ हुआ दिखाई दे रहा है खंबा दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर मे हमे बहुत से लोग दिखाई दे रहे है की ग्राउंड दिखाई दे रहा है। पेड पोधे दिखाई दे --

गार्डेन दिखाई दे रहा है घास दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है ग्रिल दिखाई दे रहा है।